यहां पे एक साइड पे कुछ बॉयज और गर्ल्स है जो कि--

सफाई कर रहे हैं और एक तरफ एक अंकल है जो कि सफाई कर रहे हैं और पास में पेड़ लगे हुए हैं।

और बोर्ड चिपकाया हुआ है और उसपे लिखा हुआ है कि प्रवेश निषेध --

सॉफ्ट चेयर और उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल कोन पड़ा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ लग रखे हैं और पीछे एक मंदिर दिखाई दे रहा है और इतना अंदर से बहुत गंदा लग रहा है।

और बुक्स की बी है इधर और बहोत सारे अलग अलग तरह के आइटम्स भी इधर रखे हुए हैं।

ये एक ऑफिस लग रहा है और ऊपर की तरफ भीम राव अंबेडकर की फोटो है और उस साइड गांधी जी की फोटो लग रखी है।

यहां एक बोर्ड लगा रखा है और उस पे लिख रखा है कि बांडा साहा जैन टेंपल बीकानेर।

ये एक कैफ़े है इधर एक लैपटॉप पड़ा है और एक व्यक्ति के हाथ में काफी पड़ी है और इधर एक ए_सी भी लगा हुआ है।

यहां बहुत सारी टेबलें और कुर्सियां लगी हुई है और बहुत सारी रंग बिरंगे लाइटें लगी हुई है।